ट्रांसफार्मर दिख रहा है बिजली विभाग का बिल्डिंग दिख रहा है मेन दरवाजा दिख रहा है कुछ ट्रांसफार्मर निचे रखे हुए है पेड़ है एक साइकिल सामने दिख रही है और आने जाने का रास्ता इसमें दिखाई दे रहे है।

हुनमान जी की मूर्ति है और हनुमान जी मुद्रा मे बैठे हुए है हमुनान जी की की मूर्ति के उपर --

ये मंदिर है और इसमें बहुत सारे पेड़ ऊपर की तरफ हैं।

झील रुममा पार्क है बीच में पानी है और आसमान क्लॉउडी दिख रहा है और सूर्य भी चमक रा हा है।

एक पहाड है पहाड से पानी निकल रहा है झरना बह रहा है।

में जाने के लिए गेट लगा हुआ है जो ब्लैक कलर का पेंट किया गया है और इसका जो--

पिलर है वाइट है पीछे खजूर का पेड़ है और भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए है बिजली का खम्बा दिख रह है उसमे बल्ब लटका हुआ--

ये एक हिल स्टेशन है बहुत ही खुबसुरत--

आसमान दिख रहा है लेकिन क्लॉउडी है और बहुत बड़ा पेड़ है उसके साथ--

और दिख रहा है उसका खम्बा दिख रहा है बहुत सारे पिलर दिख रहा है और जो बिल्डिग का जो ऊपर का भाग है वाइट कलर का है ।

यह किसी ऑफिस का फाटक हैफाटक भि लिखा हुआ है प्रवेश की --

केनरा बैंक है और यहाँ सामने दरवाजा दिख रहा है जिसमे लोहें का चैनल लगा हुआ है एक ओटो रीक्सा भी सामने दिख रहा है ।

बाउंड्री के साथ ही एक पुल है और पुल के पीछे एक घर बना हुआ है जिसका कलर है गुलाबी और उसका बॉर्डर रेड --

यह माँ काली का मंदिर है माँ को लाल कपड़े से पहनाया गया है।

और बहुत सारे पेड़ है पीछे की तरफ बहुत सारा पेड़ दिख रहा है आसमान भी दिख रहा है बट वो क्लॉउडी हे।

डिफ्रेंट कलर में--

दो आदमी जाते हुए दिखाई दे रहे है सामने एक पेड़ है और बिज्ली का खम्बा है ग्यारा हज़ार वोल्टेज खंबा दिख रहा बड़ा सा।